में एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।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

यहां पर घर का कलर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है।